इस इमेज में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा है एस.बी.आई योनो केस करके लिखा हुआ है।

इस इमेज में हम देख पा रहे हैं यहाँ रंगोली बनी हुई है राधा कृष्ण की‌।

ये यहाँ वर्कआउट कर रहे हैं और ये बॉडी बना रहे हैं।

साइड में एक बिल्डिंग बनी हुई है। जस्ट सामने भी एक बिल्डिंग बनी हुई है उसपे चैनल गेट लगा हुआ--

पता नहीं ये पुराने काल का दिखाई दे रहा --

ऐसे सामने बोहोत सारी ईंट रखी हुई है।

इहां पे मशीनें रेखी हुई है।

तुरंत खा लो देखते ही मूंह में पानी आ जा रहा है। सैंडविच बहुत ज्यादा देखने में तो बहुत टेस्टी दिखाई दे रहा है।

सामने हमें एक इमेज दिखाई दे रही है और बिल्डिंग पे लिखा हुआ है ज्ञान गुरु एकेडमी ।

एक बीच में पानी भरा हुआ है और पानी में बोहत ही अच्छा लग रहा है ग्रीन ग्रीन |

इस इमेज में हमें गोल्डन कलर की चार प्रतिमा दिखाई दे रही हैं |

पता है यहाँ पे ब्लू कलर मे लिखा हुआ है। व्हाइट कलर से फेड्रल बैंक ।

इस इमेज में हमें दिखाई दे रहा है यह एक बस स्टॉप है। यहाँ लाइन से बोहत सारी बस खड़ी हुई है |

तो यह मंदिर जैसा लग दिखाई दे रहा है | हमें मंदिर की तरह लग रहा है लेकिन ये बोहत ही --